और यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है दुकान पूरी माला से सजी हुई है।

ये एक हॉल है। हॉल में बहोत सारे एल.इ.डी. बल्ब्स लगे हुए हैं। हॉल पूरा गुब्बारो से सजा हुआ है।

पास में इ एक लोहे का टॉवर है।

इसमें एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ है मंदिर में बहुत सारे भगवान की फोटोस हैं।

इसके सामने एक स्टैच्यू बना हुआ है। इसमें बहुत सारे बलप लगे हुए हैं।

घर के सामने बहोत सारी सब्जियां लगी हुई है। घर के आस-पास बहोत सारे घर बने हुए हैं।

यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं। सड़क पर कुछ ट्रक दिखाई दे रहे हैं। आस-पास बिल्डिंगस बनी हुई हैं।